और बहुत सारे साइकिल --

और बहुत सारे सामान सब रखे हुए हैं।

यहाँ पे गलमा में फूल है उसके बाद पानी है।

पानी का बोतल है उसके बाद माजा है।

तिरपाल आदि बिछाया गया है ।